एक घर है जो रेड रंग के हैं।

यह एक रेस्टोरेंट हैं जिनमें अनेक प्रकार की कुर्सी हैं और टेबल हैं

यह एक घर हैजो बहुत ऊंचे इमारत है।

अ एक घर है जिसमें एक आदमी और बहुत से औरत हैंजो अपने फोन को चला रहे हैं।

उसके सामने एक झोपड़ी है जिसमें एक गुंटी है और गुंटी मे माजा लिखा हुआ है जो कि लाल रंग का है।

जोकि सफेद कपड़ा से ढका हुआ है और बहुत से व्यक्ति खड़े हैं।

उसके बीच में एक पिलर दिया हुआ है ठीक उसके बगल में बहुत से पेड़ हैं।

सामने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है जो पीले रंग से पेंट किया हुआ--

कुछ व्यक्ति आगे खड़े है और कुछ बांस के पीछे खड़े है।

उसके ऊपर दो पोस्टर लगे हुए हैं।

चार पिलर दिया हुआ है ठीक उसी के सामने एक बस खड़ी है।

ऑटो खड़ी है जो की पेट्रोल भरा रहे हैं।